बहोत सारे बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। टीचर्स खड़ी हैं। बच्चे दिल लगाके पढाई कर रहे हैं अपनी।

यह कुछ देख रहे हैं। महसूस कर रहे है। यहा पे खड़े हो कर। बड़ी शी नेहेर है।